थोड़ी घास लगी हुई है जमीन में और छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं पौधे के साइड बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हैं और थोड़े अ भी दिख रहे हैं।

छोटे-छोटे कुछ जानवर टाईप खड़े हुए है और प्री पीछे से हरे कलर का एक घर टाइप का बना हुआ है और पूरे सीखे बने हुए है और फिर हरी-हरी पत्तियां दिख रही है।